यहां पर मुझे एक व्हील चेयर दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक प्रदर्शनी दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

पानी में इस ब्रिज का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक गेट दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर मुझे एक पलंग दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे शुभ लाभ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर मुझे एक कार्यालय दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक जूते चप्पल की दुकान दिखाई दे रही है।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

चारा लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे खंभे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारी कार दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर बहोत सारी पेंटिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक जयमाला की दुकान दिखाई दे रही है।